ये एक रेस्ट्रोन है जहां पे अभी-अभी कुछ लोग चिकिन बिरयानी खाकर उठे है और ये यहाँ पे उनके झूठे प्लेट्स पड़े हुए है और एक बिसलेरी की बोटल भी है।